बाइक भी दिख रहा है।

एक लड़की ने रेड कलर का टॉप --

किसी एक योगा क्लास हैं।

ये एक मैदान है जिसमें सूर्य की किरण साफ नजर आ रही है।

दूर- दूर में बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

ये एक ज्वेलर्स शॉप है।

एक पंखा भी लगा हुआ है।

दो लड़के भी नजर--

आ रहा है जिसको रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया--

दूर में एक बिल्डिंग और--

जिसके सामने का भाग सफेद रंग और पीछे का भाग लाल रंग दिखाई दे रहा है।

एक सफेद कलर की कार भी नजर आ रही है।